जस्ट बगल में एक ऑटो खड़ा हुआ है जो ऑटो खड़ा है उसका कलर ब्लैक कलर का है सामने एक बहोत बड़ा पेड़ लगा है।

और इस घर के अंदर कुछ केले के पेड़ लगे हैं और बगल में घास पूस लगी हुई है खेत खुले पड़े हैं।

यह एक बच्चों की टॉय शॉप है जिस पर काफी सारे खिलौने मिलते हैं।

पत्थर पड़ा हुआ है जस्ट बगल में लोहे की जाली लगी हुई है और जाली के ऊपर जंग हैं।

ये रिकॉनाइजेशन फंक्शन है यहां पर बलून लगे हुए बैलून कलर का लगे--

जैसे कुछ इंसान मंदिर से झंडा लेकर आ रहे है।

यह एक साड़ियों की दुकान है जैसे यहां पर काफी सारे लोग साड़ी सेल करते हैं।